येह एक चित्र है इसमें बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है कुछ लाइटें कुछ पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक चित्र है इसमें बहुत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी लाइटे लगी हुई दिख रही है।